बोरे लोड हो रहे है टॉर्च जल रही है पिकअप खड़ी हुई है गाड़ी खड़ी हुई है बोरे हैंऔर कितना अच्छे दिख रहे हैं और दिख रहे हैं पूरा बोरे और --

बाइक पल्सर भी है स्कूटी भी है बहुत अच्छे अच्छे कार भी है और पेड़ भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं और बहुत अच्छा बादल भी--